ये तस्वीर एक बेड की है जिस पे की ये दो आ बेड शीट रखा हुआ है ग्रीन कलर का--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

इस तस्वीर मे बहुत सारे बैंच और टेबल दिखाई दे रहे है और एक ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है और बहुत सारे लाईटस जल रही है।

इस तस्वीर मे एक बड़ा सा फिल्ड दिखाई दे रहा है फिल्ड के चारों साइड घर दिखाई दे रहा है और पेड़ दिखाई दे रहा है एक बिजली का पोल दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर मे एक बड़ा सा नदी दिखाई दे रहा है और पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है और घास दिखाई दे रहा है आसमान ब्लैक और ब्लू आसमान ब्लैक और ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है और सूर्य भगवान दिखाई दे रहे है व्हाइट कलर के।

इस तस्वीर मे बहुत सारी तस्वीर दिखाई दे रही है अअअ अह और एक एक गेट दिखाई दे रहा है जो की साइड मे है।

इस तस्वीर मे दो-तीन आदमी दिखाई दे रहा है उ-म्म- दो आदमी एक आदमी किसी से बात कर रहा है और एक आदमी--

बहुत सारे कप दिखाई दे रहे है जो की कलरफुल कप हैं और इस तस्वीर मे--